चीजों की जुगताई की गईं है |.

जो कि यहाँ पर पहले के समय में बोहुत --

बिसकिट से चॉकलेट से अप --

आ लोग यहाँ से लोग आते हैं।

और लोग यहाँ पर अक्सर यहाँ पर --

किसी फौज के लोग यहाँ पर अपना कैब --

और इसपे से एक उम इस पे सामान रख कर लगाया जाता है।